और उसने व्हाइट कलर के शूज़ पेहन रखे हैं और उसने ग्रे कलर की पैंट पेहनी हुईं हैं।

बेड रखा हुआ है बेड पे दो वाइट कलर के तकिए और दो --